और कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

प्ले ग्राउंड में वो जहाँ भी मुझे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और--

और ट्रेन के पास में एक खंभा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ जहाँ में मैं देख रही हूँ कि--

यहां पे मैं देख रही हूं--

मैं यहां एक रूम के अंदर हूं जहां पे मुझे--

महिलाएं खड़ी हुई है कुछ लड़कियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रहे है।

मैं यहाँ एक रोड के साइड में हूँ मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत सारी --

मैं यहाँ एक रोड के साइड में हूँ और यहाँ मैं देख रही हूँ ये एक--

कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा--